एक झील का दृश्य है।

किताबें दीवार की सेल्फ में रखी है।

कमरे में लकड़ी की कुर्सियां रखी है।

आकाश में सूरज ढल रहा है।

पक्षी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी गारीया खरी है।

कुछ लोग खिड़की के पास बैठे हैं।

वार का रंग हरा और लाल है।

दीवारों पर पोस्टर्स और पेंटिंग्स लगी है।

दीवारो का रंग हल्का हरा है।

लोग राष्ट्रीय ध्वज को देख रहे है।

घास का मैदान बहुत सुंदर दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक सुंदर बगीचा दिखाए जा रहे हैं।

चित्र में हमें एक राजपत दृश्य दिखाया गया है।

तस्वीर में संपर्क के लिए फोन नंबर दिया गया है।

तस्वीर में दिखाए गए दुकान का नाम मां चंचला ड्राई फ्रूट्स है।

इस छवि में एक पेट्रोल पंप का दृश्य दिखाया गया है।

दिखाए गए चित्र में हमें ईंटों का फर्श नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में दिखाए गए बस का रंग सफ़ेद है।

इस तस्वीर में दिखाये गए शेर का बाल भूरे रंग के है।

चित्र में दिखाए गए अलमारी को दीवार पे लगाया हुआ है।

दिखाए गए चित्र के दीवार पर लकरी की अलमारियां लगी है।

त्र में दिखाए गए बेकरी का नाम बेकर्स स्पेशल है।